बहुत हैं और ये बहुत ही अच्छा दुकान है और ये दुकान काफ़ी दिनों से चल रहा है | जोकि काफ़ी ज्यादा अच्छा है ये अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है ये दुकान |

ये यहाँ पर गाड़ी का सर्विसिंग होता है और ये यहाँ पर अच्छे से गाड़ी का सर्विसिंग होता है और ये बहुत दिनों से है |

तर लिखा है बहुत सारी आधार कार्ड बारे में जा --

और यहा पर सुधा का सारा आइटम मिलता है।

और यहाँ पर काफी ज्यादा बाइक मोटर साइकिल लगे हुए हैं।